और पेपर भी नीचे रखा हुआ है येलो कलर की दुकान है और गुच्छे में हैं लिच--

स्कूल है स्कूल का दिवार येलो से पिंक से भारत माता की पिक्चर लगी हुई है महात्मा गाँधी जी की लगी हुई है ।

और दिवाल में घड़ी है आसमान है।